नीचे की और सफ़ेद फर्श है यहाँ पर रखी हुई लगी हुई है कुछ लाइटे भी यहाँ पर दिखाई दे रही है जो की हरे रंग की है और कई सफ़ेद --

आस - पास दुकाने दिख रही है जिसपे की लाल कलर की शटर दिखराई दे रही है।

यहाँ एक गैरेज की एक तस्वीर है जहाँ पे की तीन गाड़िया खड़ी है और उन्हीं का इन्वोआ कलर --

यहाँ पे रोड बनी हुई है जिसपे की सफ़ेद रंग की पटी दिखाई दे रही है आस पास पेड़ दिख रहे हैं ।

यहाँ पर मॉल की तस्वीर है जहां फर्श लगी हुई हैं और गाड़ी खड़ी है जो नील काले रंग की है।

यहाँ पे शीट दिखाई दे रही है और आस-पास नीले रंग के पर्दे दिखाई दे रहे है।

छत दिख रही है काले कलर की कुछ दिखाई दे रहा है आस-पास खिड़कियाँ लगी है जो सफ़ेद रंग की दिखाई दे--

और टेबल लगी हुई है जिसमे की कोई सामान रखा हुई है बॉटल स्प्रे बॉटल टी_वी यहाँ पर लगी हुई हैं।